और ये लोहे की पाइप का बना दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति इधर आ रहा है जींस पहने हुए--

यहां पर बोरियों का भंडार दिखाई दे रहा है।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

खिड़कियां लगी हुई उनपे जालियां लगे हुए हैं।

यहां पर कांच के अंदर केक रखे हुए हैं।

और बिस्किट के काफी सारे पैकेट्स रखे हुए हैं।

वाटर पीने वाला किनले बोतल रखी हुई है।

किसी मंदिर के बाहर का चित्र है।

और चढ़ने के लिए की साइड की रेलिंग दिखाई दे रही है।

एक इंसान इसपे चढ़ रहा है जिसने पीले रंग के सल्ट और नीले रंग की जींस पहन रखी है।

और ऊपर काले रंग के बादल छाए हुए हैं।

गणेश भगवान का चित्र बना हुआ है दीवाल पर।

दुकान के बाहर सी_सी_टी_वी कैमरा लगे हुए हैं।

कांच का गेट बना हुआ है जिसके अंदर एक इंसान दिखाई दे रहा है।

ये येलो और रेड कलर से पेंट है।

ऊपर शंख के दो आकृति बनी हुई है।

यहां पे लिखा हुआ है न्यू ज्ञानी जी का ढाबा।

यहां पर काफी अलग अलग प्रकार के फीमेल के कपड़े टंगे हुए हैं।

और ऊपर इनके रेट लिखा हुआ है पचास तीस।

इसमें ऊपर काफी सारी बुके रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

नीचे काफी सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं।

नीचे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

बगल में एक वाटर पाट बना हुआ है।

और सामने काफी सारे घर दिखाई दे रहे हैं और नेटवर्क टॉवर भी दिखाई दे रहा है।

बारिश से बचने के लिए ऊपर छत पड़ी हुई है।

और पीले रंग के अठ्ठासी नंबर लिखे हैं वो दिखाई दे रहे हैं।

बाहर डिजाइन दार झालर लटकी हुई है।

काफी सारे चप्पल जूते दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक इंसान दिखाई दे रहा है।

और चढ़ने के लिए जीना बने हुए हैं।

यहां पर कोने में एक एल_एस लिखा हुआ है।

और जीत मेडिकल नीट लिखा हुआ है।

और एक लाल रंग का डम्फा खड़ा हुआ है।

यहां पर एक कांच के अंदर तीन प्रकार की सेरवानीया रखी हुई है।

जो एक सिल्वर रंग की है एक गोल्डेन रंग की है हल्का एक बस खाली हाफ है।